ये एक सब्जी और फूलों की मंडी है।

जिसका जो क्रीम कलर की बिल्डिंग है।

अरे सब और पूरी बिल्डिंग व्हाइट कलर में बनी हैं बाहर से जीने जा रहे हैं।

ये एक लक्जरी बेकरी का सीन है।

यह थिएटर का साइड व्यू दिख रहा है।

ऑपरेशन कर रहा है यह एक ऑपरेशन सेंटर रूम है।

दो वर्क दो वर्कर हैं एक डॉ दो डॉक्टर हैं सब ने मास्क लगाया हुआ है यहां पर एक मरीज लेटा हुआ है यहां पर एक पानी की बोतल रखी हुई है और यहां पर कुछ फाइल रखी हुई हैं।

उसके अंदर उसका ड्राइवर बैठा है कुछ कस्टमर बैठे हैं और बाहर तीन आदमी खड़े हैं।

एक बोट पूरी खाली हुई है यहां पे सिर्फ दो लोग हैं एक बोट में कई सारे लोग बैठे हुए हैं।

इस फोटो में एक मंदिर नजर आ रहा है।

और ये पूरा क्रीम कलर की थीम पे से है।

पीछे भी हिंदी में लिखा हुआ है कल्याण ज्वेलर ।